और पूरा इधर खडेला लड़का और लड़की और बच्चा बच्ची एक अम्ब्रेला छत्रि लेकर इधर पूरा सन बैठा था और इसका --

में मेरे को एक एस_बी_आई का ए_टी_एम भी मेरे को दिख रहा है और पूरा इधर फ्लाग होस्टिंग के लिए एक पोल है और एक कार भी इधर कड़े रहा --

एक रोड मेरे को दिख रहे पूरा शटर और एक आइसक्रीम वाला भी मेरे को दिख रहा इधर एक शो--

लड़का और लड़की का सेपरेट सेपरेट अलग-अलग लाइन मेरेको दिख रही दो लाइन ये लड़का का लाइन बहुत बढी और बहुत लॉन्ग --

और मेरेको बुक्स पेन्स और अं घर के लिए सामान पुरे इधर मेरे को दिख रहे।